जहाँ पे काफ़ी भीड़-भाड़ हैं।

बाइक के हमे एक इधर से एक उधर से जा रहा हैं बिल्डिंग काफी पुराना नज़र आ रहा है इसका मरम्मत अभी तक नहीं हुआ है।

उम्म्म्म एक तो फोटो खिंचवा रहा है एक काउंटर पे है और एक उससे बात-चीत कर रहा है उम्म्म देखने में लुक थोड़ा अच्छा ही है।

ये स्कूल के बच्चे रंगोली बना रहे हैं ।